उम्म कुछ अलग-अलग करने के गुब्बारे लगाए हुए हैं और एक हैप्पी बर्थडे का लगाया हुआ है।

दुकान का नाम भैरव साड़ीज है।